पेड़ पौधे लगे हुए हैं लाइट खंभे भी लगे हुए हैं ऊपर जाने के लिए पीछे से दिए गए है ।